सामने एक दो लेडी खड़ी हुई है।

सामने ही बोर्ड पर एस_बी_आई स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

बराबर में ब्रेक डांस चल रहा है।

इस छवि में यह दिखाया जा रहा है कि यह कोई दुकान है।

और बराबर में दो औरतें भी आ रही हैं।

सामने ही एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर आपका हार्दिक स्वागत है ऐसा लिखा हुआ है।

वहां पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं बाई तरफ दो सफेद रंग की स्कूटी और एक नलका भी है।

में रेड रंग का पेंट हुआ हुआ है।

गिटार और ढोल टंगे हुए हैं।

इस छवि में यह दिखाई जा रहा है।

इस सोफे के बराबर मे मेज पड़ी हुई है।